फोटो फ्रेम और खेलने के लिए गुड़िया वगैरा टेडी बेयर --

इस फोटो में बहोत बड़ा बंगला बना हुआ है कै नवा प्लेस --

इस फोटो के अंदर बहोत बड़ा ग्राउंड है ग्राउंड में है।

इस फोटो में एक कमरा है बहोत बड़ा ऊपर पंखे लगे हुए हैं।

इसमें एक फ्रिज बोटल पड़ी है।